गर्मी से बचने के लिए एक ग्रीन कलर की चद्दर भी--

और यह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है।

और कुछ लाइटिंग का काम हुआ है जिसमें--

और पेट्रोल पंप पर लाइट का काम हुआ है।

पेट्रोल पंप के पीछे एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है।

सब्जियों वाले हैं और कुछ पौधे बड़े पेड़ वाले है और यह अलग अलग तरह के पौधे हैं।

यह अपनी फोटो खींच रहा है।

वे विवाह शादियों व खुशी के मौके पर--

खड़े है और दो लोग बाहर खड़े है जो बैंक की तरफ देख रहे है और एक आदमी--

यह पानी वाली दो टंकी हैं एक का रंग सफेद है और एक का रंग--

तो लोग दो आदमी तो बोट चला रहे हैं और इसमें तीन लोग खड़े हैं।